पीछे एक काले रंग की कुर्सी रखी हुई है जिसके ऊपर एक बैग रखा हुआ है और पीछे दीवाल पर लाल रंग का पेंट हुआ है और नीचे पीले रंग का है।

पीछे एक बस खड़ी हुई है और एक टेंपो वाला खड़ा है।

यहां पर बहुत सारी यात्री खड़े हुए हैं कुछ आदमी और कुछ औरतें है एक आदमी ने अपने पूरे शरीर पे चद्दर लपेटी हुई है और हाथ में एक थैला लिया है।

और द्वाल पर पीले रंग का पेंट किया गया है जिस पर छोटे छोटे बोर्ड लगाए गए हैं।

और कुछ पेड़ भी लगाए गए हैं जो कि बड़े बड़े हैं एक साइड साइकिल खड़ी हुई है जिसके पास एक बिल्डिंग बनी हुई है जो कि गुलाबी रंग का पेंट किया गया है।

इस चित्र में हमें एक मार्केट दिखाई गई है यहां पर कुछ टेंपो खड़े हुए और कुछ बाईकें की खड़ी हुई है एक छोटा हाथी वाला आ रहा है।

इस चित्र में हमें एक शोरूम दिखाया गया है जो दिखने में कोई इलेक्ट्रॉनिक का लग रहा है।